हमे नीचे बहुत हरियाली दिखाई दे रही है और आस पास बहुत सारे पेड़ लगे हुए है यह देखने मे हमें बहुत अच्छा लग रहा है।

इसमे घास भी लागी हुई है पत्थर भी दिखाई दे रहे है इसमे तीन खड़की जैसी लगी हुई है और इसमे ऊपर नीला आसमान दिखाई दे रहा है।

काच की काच लगा हुआ है इसमे एक बोर्ड लगा हुआ है एक मीटर लगा हुआ है। दिखने मे बहोत अच्छे --

इस इमेज मे हमको बहुत सारे पेड़ दिखाई दे रहे है पानी बेहता हुआ दिखाई दे रहा है और यहाँ पर हमको पे--

इस इमेज में हमे एक संसज जैसा दिखाई दे रहा है इसमे क्रीम कलर का पॅण्ट किया है और ये देखने मे बहुत अच्छा लग रहा है दरवाजा पे और यहा पर --

इस इमेज मे हमे एक जिम जैसी दिखाई दे रही है। यहा पर बहुत सारी मशीन दिखाई दे रही है। यहा पर ड़मबल दिखाई दे रहे है।

यहा पर दस बारा मशीन रखी हुई है यहा पर बहुत सारे ये ए ए_सी लगी हुई है फॅन लगे हुए है पंखे लगे हुए है लाइट लगी हुई है।

इमेज मे हमे दो तीन महिल्या दिखाई दे रही है। जो मछ्ली रखे हुए है कुछ बड़ी मछ्ली है। कुछ छोटी मछ्ली है। इसमे एक नल दिखाई दे रहा है।